inkscape का उपयोग करके create and edit multiple objects पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे objects को copy और paste करना
objects को duplicate और clone करना
विभिन्न objects के समूह और क्रम बनाना
multiple selection और invert selection
clipping और masking
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ऊबुंटू लिनक्स 1204 os
inkscape version 0484
dash home पर जाएँ औऱ type करें inkscape
आप logo पर क्लिक करके inkscape खोल सकते हैं
assignment _ 1 svg file खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
मैंने इसे documents folder में सेव किया है
पहले हम सीखेंगे कि एक object को कैसे copy और paste करें
ऐसा करने के लिए हमें पहले एक object को चुनना चाहिए अतः पंचभुज पर click करें
अब इसे copy करने के लिए अपने keyboard पर ctrl + c दबाएँ
अब object को paste करने के लिए ctrl + v दबाएँ आप पंचभुज की copy canvas पर देख सकते हैं
objects की copies बनाने के लिए 3 अन्य तरीके हैं
इन सभी 3 तरीकों में object की एक copy वास्तविक object के ऊपर बनती है
पहले तरीके को paste special कहते हैं
याद रखें कि हमने object को copy करने के लिए ctrl + c पहले ही दबाया है
जहाँ से इसे copied किया गया था उसे सही जगह पर object को paste करने के लिए ctrl + alt + v कीज दबाएँ
वास्तविक object को इसके दाईं ओर नीचे देखने के लिए copied किए गए object को copied करें
इन दोनों objects को move करें और एक ओर रखें
दूसरे तरीके को duplication कहते हैं duplication के लिए हमें पहले object को copy करने की आवश्यकता नहीं है
पंचभुज को चुनें और अपने keyboard पर ctrl + d दबाएँ
अब वास्तविक के ठीक ऊपर एक duplicate पंचभुज बनता है
अब इसके नीचे वास्तविक को देखने के लिए duplicated object को move करें
duplicated object में बदलाव वास्तविक object पर प्रभाव नहीं डालते हैं
इसका रंग हरे में बदलकर और size कम करके इसे जाँचे
तीसरा तरीका cloning है
दीर्घवृत्त पर click करें और clone को बनाने के लिए alt + d दबाएँ
पहले की तरह cloned object वास्तविक के ठीक ऊपर बनता है
इसे दिखने योग्य बनाने के लिए एक ओर move करें
कृपया ध्यान दें कि cloned object हमेशा वास्तविक object से जुड जायेगा
वास्तविक object को इसके parent के रूप में भी जाना जाता है
वास्तविक object में कोई भी बदलाव जैसे कि size रंग आदि में इसके clone को प्रभावित करेगा
वास्तविक object के रंग को गुलाबी में बदलकर इसे रोटेट कर और इसका size कम करके इसे जाँचे
देखें कि समान बदलाव स्वतः ही cloned object में होते हैं
वास्तविक object से clone को अलग करने के लिए पहले clone को चुनें औऱ फिर shift + alt + d दबाएँ
अब वास्तविक object को फिर से चुनें और इसके size को बदलें
देखें कि cloned object प्रभावित नहीं होता है
इन operations के लिए short icons command bar में उपलब्ध हैं जैसे दिखाया गया है
multiple objects को चुनने के लिए shift key को पकड कर रखें और objects पर click करें जिसे आप चुनना चाहते हैं
मैं पहले दीर्घवृत्त को चुनूंगी फिर मैं shift key पकड़ कर रखूँगी औऱ अन्य दीर्घवृत्त को चुनूंगी
ध्यान दें कि दोनों objects अब चयनित हैं
ctrl + g कीज़ को एक साथ दबाकर हम अब उन्हें समूह में कर सकते हैं
ध्यान दें कि दीर्घवृत्त अब एक object के रूप में समूहित हो गए हैं
आप उन्हें आसपास move कर सकते हैं और आप देखेंगे कि दोनों objects एक objects के रूप में move होते हैं
समूह के साइज को बदलने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि दोनों objects का साइज अनुपात से बदलता है
रंग को नीले में बदलें और देखें कि दोनों objects समान रंग में बदलते हैं
हम क्या करेंगे यदि हम समूह में केवल किसी एक objects की properties को बदलना चाहते हैं
समूह में से एक object को चुनने के लिए ctrl button दबाएँ और object पर click करें
इस क्रिया के द्वारा हम समूह में प्रवेश कर सकते हैं और व्यक्तिगत objects को चुन सकते हैं
समूह से बाहर आने के लिए canvas पर कहीं भी खाली स्थान पर click करें
objects को अलग करने के लिए पहले समूह को चुनें और ctrl + shift + g कीज़ या ctrl + u कीज़ दबाएँ
अब दीर्घवृत्त अलग अलग हो गए हैं
इन operations के लिए short icons command bar पर उपलब्ध हैं जैसा दिखाया गया है
canvas पर सभी objects को चुनने के लिए ctrl + a कीज़ दबाएँ
सभी objects को अचयनित करने के लिए canvas पर कहीं भी खाली स्थान पर click करें
यदि हम किसी विशिष्ट को छोडकर सभी objects को चुनना चाहते हैं तो हम invert selection option का उपयोग कर सकते हैं
हम arrow को छोडकर सभी objects को चुनना चाहते हैं
तो पहले arrow पर click करें edit menu पर जाएँ और invert selection पर click करें
ध्यान दें कि canvas में arrow को छोडकर सभी objects चयनित हैं
अब सीखते हैं कि objects को कैसे क्रमबद्ध करते हैं
बडे पंचभुज के ऊपर छोटे पंचभुज को move करें
अब एक star बनाएँ और इसे छोटे पंचभुज के ऊपर रखें
छोटे पंचभुज को चुनें object menu पर जाएँ और raise पर click करें
देखें अब छोटा पंचभुज बढ गया है और star के ऊपर है
अब star पर click करें object menu पर जाएँ lower पर click करें
अब star नीचे की ओर moved होता है और बडा पंचभुज इसके ऊपर दिखाई देता है
अब बडे पंचभुज पर click करें object menu पर जाएँ और raise to top पर click करें अब बडा पंचुभुज सबसे ऊपर दिखाई देता है
अब फिर से object menu पर जाएँ lower to bottom पर click करें देखें बडा पंचभुज तल में moved होता है
हम इन options को tool controls bar में भी पा सकते हैं
अब सीखते हैं कि clipping कैसे करें
clipping आपके जटिल objects को तेजी
औऱ आसानी से उनके पूर्ण आकार को बदलकर
आपके डिजाइन के अन्य एलिमेंट या आकार को उसके अनुरूप बनाता है
इस प्रदर्शन के लिए मैं एक image का उपयोग करूँगी मेरे पास यहाँ नये inkscape फाइल में एक image है
इस image पर मैं एक दीर्घवृत्त आकृति बनाऊंगी
अब image औऱ दीर्घवृत्त को चुनें
object menu पर जाएँ clip पर click करें और फिर set पर click करें
देखें कि image अब दीर्घवृत्त की आकृति से clipped हो गई है
clipping में object की आकृति clip के रूप में उपयोगित है जो प्रदर्शित क्षेत्र को परिभाषित करता है
हम object menu पर वापस जाकर clip को remove कर सकते हैं clip पर click करें और फिर release पर click करें
अब clip released होती है
अब masking करना सीखते हैं
masking clipping के समान है
masking में एक object की पारदर्शिता या चमक दूसरे object की opacity को निर्धारित करता है
masking के प्रदर्शन के लिए मैं gradient tool का उपयोग करके पहले दीर्घवृत्त को अर्द्ध पारदर्शी बनाऊंगी
अब दीर्घवृत्त चुनें
object menu पर जाएँ fill and stroke पर click करें
radial gradient पर click करें औऱ फिर edit पर click करें
रंग को सफेद में बदलने के लिए rgb sliders को एकदम दाएँ move करें
stop drop down arrow पर click करें और अन्य stop को चुनें
रंग को काला और alpha value को 255 में बदलने के लिए rgb sliders को एकदम बाईं ओर move करें
बीच में एक अन्य रंग जोडने के लिए add stop पर click करें
node tool पर click करें और diamond handle को ऊपर की और move करें
अब image औऱ दीर्घवृत्त को चुनें
object menu पर जाएँ
mask पर click करें और फिर set पर click करें
देखें कि mask image पर बन गया है
ध्यान दें कि image masking object की पारदर्शिता properties लाता है जो कि दीर्घवृत्त है
mask हटाने के लिए object menu पर वापस जाएँ
mask पर click करें और फिर release पर click करें
mask अब the गया है
संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा ऑब्जेक्ट्स को कॉपी औऱ पेस्ट करना
duplicate और clone objects
विभिन्न objects को समूह में और क्रमबद्ध करना
multiple selection और invert selection
clipping और masking
यहाँ आपके लिए 2 नियत कार्य हैं
भूरे रंग में एक उर्ध्वाधर दीर्घवृत्त और काले रंग में एक वृत्त बनाएँ
दीर्घवृत्त के ऊपर केंद्र पर वृत्त को रखें
यह आंख के आकार की तरह दिखना चाहिए
अब उन्हें समूह में रखें
एक दूसरी आंख बनाने के लिए एक clone बनाएँ
दोनों आंखों को दृश्यमान करने के लिए इसे एक ओर move करें
नीले रंग में एक वृत्त और लाल रंग में एक वर्ग को बनाएँ
वर्ग का duplicate बनाएँ और दोनों वर्गों को तिरछे विपरीत दिशा में रखें
दोनों वर्गों को चुनें और उन्हें एक object में समूहित करें
वृत्त को समूहित वर्गों के ऊपर केंद्र में रखें
दोनों को चुनें और एक clip बनाएँ यह धनुष की तरह दिखना चाहिए
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
यह स्क्रिप लता द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद